यह एक स्टेशन का बाहर का दृश्य है।

गेट के आसपास कुछ लिखा हुआ था और रेड कपड़ा टंगा हुआ है उसके पीछे भी एक पुरुष टाइप से देख रहा है।

ये सरकारी कार्यालय टाइप से लग रहा है।

सामने पहाड़ी ढाबा बहुत बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है और इधर में कोका कोला

और पीछे एक फोटो भी है भगवान का।

एक नही कई सारे होंगे लेकिन लाइट के वजह से एक ही दिख रहा--

दो फूल सजाने के लिए रखा गया है वहीं पे सामने में बहुत अच्छा है नीचे में।

बोर्ड लग रहा है बोर्ड लगा हुआ है।

ये चार मोटे खम्बो से बनाया गया है।

और इस भीड़ में बहुत से लोग खड़े हैं।

की इसे जस्ट अभी जैसा लग रहा है कि तोड़ के ही जस्ट इसको कैरेट में पैक किया जा रहा है।

अच्छे तरीकों से इसको कैरेट में भर गया है ऊपर पेपर वगैरा साथ में देकर।

पीछे में एक व्यक्ति जूम करके देखने में पीछे में एक व्यक्ति गाड़ी शायद साफ सफाई कर रहा है।

उसके टायर उसके टायर के पास भी वो गाड़ी के टायर के पास भी बैलून पांच छो रखा हुआ है।

थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा है।